ये किसी चावला रेस्टोरेंट के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है के फोटो एक अंधेरे में ली हुई नजर आ रही है।

यहां पे टायर के कायर टायर के ओ भी खोला हुआ नजर आ रहा है।

जहां पे बहोत सारी नीले कलर के फोल्ड वाले सोफे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग हैं जो स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी दिखाई दे रही है ये पूल किसी घर में बना हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक बैग रखा हुआ है और एक पानी की बॉटल भी किनारी पे रखी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी मॉल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे मैगी के पाउच रखे हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है बाहर की ओर कुछ छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्लेटफार्म पे कुछ लोग भी वेटिंग मे खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ बोर्ड यहां लगे हुए --

ये किसी रोड की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे सामने से दो भैंसे आती हुई नजर आ रही है।

जहां पर तीन चार लोहे की रेकों में कुछ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें किसी गमले में कैक्टस के पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं किसी में फूलों वाले पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये किसी बस स्टैंड की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर तीन चार बसें हैं जो प्लेटफार्म पे लगी हुई नजर आ रही है।

जहां पे एक नीले कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसपे राजस्थान लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

यहां पर एक लड़का है जिसने काला कुर्ता पजामा पहना है वो बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाता हुआ भी नजर आ रहा है।

बड़ा सी जगह दिखाई दे रही है जहां पे एक पिकअप गाड़ी में बहोत सारी आलू प्याज की बोरिया आदमी लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर जेंट्स की बहुत सारी अलग-अलग तरह की अंडरवियर रखी हुई दिखाई दे रही है बनियानों के बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।